एक छोटी गणेश की मूर्ति दिखाई दे रही है उसके पीछे एक बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है।

मस्जिद बहुत ऊंचाई तक दिख रही है जिसमे कांच भी दिख रहे है ऊपर फर्श पर सफेद काला रंग दिखाई दे रहा है।